यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे कुछ यूनिफॉर्मस् का शो है क्योंकि ऊपर हम देख सकते हैं बहोत सारे यूनिफॉर्म रखे हुए हैं।

उसके साइड ही दही है।

उसके साथ आचार भी है उसके साइड मटन वटन भी है।

और पिलर एक पिलर है ब्लैक कलर का उस पिलर में लिखा है नो स्मोकिंग एरिया ।

उसके ठीक उल्टा साइड आप देख सकते है भुजिया का पैकेट है और यह क्लीयरली इससे यह समझ आता है कि ये एक दुकान है।

इमेज को देखके लगता है कि कोई ओकेजन है क्योंकि साइड में बहुत सारे बेंच है इसके ऊपर पानी भी है।

यहां पे हम देख सकते हैं कि एक मंदिर है लाल कलर का उसके सामने एक रेड कलर का झंडा भी है।

को देखकर हमें लगता है कि यह कुछ कंप्यूटर वगैरा का लैब हो सकता है।